यह दुकान एक कान की है जो नकली कान लगाए जाते हैं यह दुकान मे कई प्रकार के--

इस तस्वीर में कई प्रकार के छोटे छोटे पौधे--

मसीन सब हैं जिसमें हमलोग सौच करते हैं नहाते हैं धोते हैं।

कूलर और फ्रिज भी रखें हुये है जो दिख रहे--

दूल्हे दुल्हन का शादी हो रहा है और ये शादी--

यह एक बहुत ही सुंदर आकर्षक नजारा दिख रहा है।

यह तीन चार पटरी दिख रहा है।